geometric properties of vectors पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
attribute table में कॉलम्स जोड़ना
attributes के लिए सांख्यिकी की गणना करना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको qgis इंटरफेस के साथ परिचित होना चाहिए
यदि नहीं हैं तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं
इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको प्लेयर के नीचे स्थित code files लिंक में दिए गए फोल्डर को डाउनलोड़ करने की आवश्यकता है
डाउनलोड़ की गई zip फाइल के कंटेंट को एक्स्ट्रैक्ट करें
एक्स्ट्रैक्ट किए गए फोल्डर में ind_railsshp फाइल पर जाएं
मैंने पहले ही code file को डाउनलोड़ एक्स्ट्रैक्ट किया है और desktop पर फोल्डर मे सेव किया है
इसे खोलने के लिए desktop में codefile पर डबलक्लिक करें
ind_railsshp फाइल पर राइटक्लिक करें
कॉन्टैक्स्ट मैन्यू से open with qgis desktop चुनें
qgis इंटरफेस खुलता है
qgis tips डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए ok बटन पर क्लिक करें
रेलमार्ग दर्शाती हुई लाइनों के साथ कैनवास पर भारत का मानचित्र खुलता है
हम रेलमार्गों के लिए लाइन की लंबाइओं की गणना करेंगे जो चालू हैं
इस जानकारी को देखने के लिए हमें attribute table खोलने की आवश्यकता है
layers panel में ind_rails layer पर राइटक्लिक करें
context menu से open attribute table ऑप्शन चुनें
attribute table खुलता है
table में exs_descri नामक attribute होता है
हम इस attribute के मान का उपयोग उन फीचर्स को चुनने के लिए कर सकते हैं जो चालू हैं
यह कॉलम विशिष्ट रेलमार्ग लाइन की स्थिति को दर्शाता है
ये operational unexamined या unsurveyed और not usable के रूप में वर्गीकृत हैं
हमें उन लाइनों को चुनने की आवश्यकता है जो चालू हैं
attribute टेबल विंडो में टूल बार में select features using an expression टूल क्लिक करें
नया डायलॉग बॉक्स select by expression खुलता है
function editor पैनल में fields and values ऑप्शन के आगे काले त्रिकोण पर क्लिक करें
सूची से exs_descri attribute चुनें
इस पर डबलक्लिक करें और इसे expression टेक्स्ट क्षेत्र में जोड़ें
exs_descri equal to सिंगल कोट्स में operational टाइप करके एक्स्प्रेशन पूर्ण करें
कृपया ध्यान दें यहां सिंटैक्स केससेंसिटिव है
शब्दों को वैसे ही टाइप करें जैसे वे attribute table में प्रदर्शित हो रहे हैं
यहां operational में o केपिटल लेटर है
टेबल के निचले भाग में select बटन के बाद close बटन पर क्लिक करें
attribute table में operational category चयनित होती हैं
attribute table बंद करें
मानचित्र पर आप देखेंगे कि operational category में आने वाली सभी लाइन चयनित हैं
ये लाइन पीले रंग में प्रदर्शित होती हैं
अब अपने चयन को नई shapefile में सेव करें
ind_rail layer पर राइटक्लिक करें और save as ऑप्शन चुनें
save vector layer as … डायलॉग बॉक्स खुलता है
file name फील्ड के आगे browse बटन पर क्लिक करें
save layer as डायलॉग बॉक्स खुलता है
आउटपुट को railwayshp नाम दें
लोकेशन चुनें मैं desktop चुनूंगी save बटन पर क्लिक करें
इस लेयर के लिए crs चुनें select crs बटन पर क्लिक करें
coordinate reference system selector डायलॉग बॉक्स खुलता है
क्योंकि हम लंबाई की गणना करने के इच्छुक हैं एक equidistance projection चुनें
filter सर्च बॉक्स में indian 1975 टाइप करें
विश्व के coordinate reference systems के नीचे geographic coordinate systems सेक्शन मेंindian 1975 epsg:4240 चुनें
ok button पर click करें
save vector layer as डायलॉग बॉक्स में डिफॉल्ट रूप से add saved file to map पहले से ही चेक है
save only selected features चेकबॉक्स को चेक करें
ok button पर click करें
एक्स्पोर्ट प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आप layers panel में लोड हुई नई लेयर railway देखेंगे
layers panel में ind_rail लेयर को बंद करने के लिए उसके आगे वाले बॉक्स को अनचेक करें क्योंकि हमें अब इसकी आवश्यकता नहीं है
कैनवास पर आप भारत के मानचित्र को केवल चालू रेलवे लाइनों के साथ देखेंगे
railway लेयर पर राइटक्लिक करें और open attribute table चुनें
अब हम प्रत्येक फीचर की लंबाई के साथ कॉलम जोड़ेंगे
tool bar में toggle editing टूल पर क्लिक करके layer को एडिटिंग मोड़ में रखें
फिर tool bar में दाएं कोने पर उपलब्ध open field calculator बटन पर क्लिक करें
field calculator डायलॉग बॉक्स में create a new field check box को चेक करें
output field name टेक्स्ट बॉक्स में lengthkm टाइप करें
output field type के रूप में decimal number real चुनें
आउटपुट को precision से 2 में बदलें
function editor panel में geometry के आगे त्रिकोण पर क्लिक करें और $length चुनें
expression टेक्स्ट बॉक्स में जोड़ने के लिए $length पर डबलक्लिक करें
$length divided by 1000 के रूप में एक्स्प्रेशन को पूर्ण करें
टेक्स्ट विंडो के शीर्ष में division operator बटन पर क्लिक करें
कीबोर्ड पर 1000 टाइप करें
हमें आउटपुट लंबाई को 1000 से विभाजित करने की आवश्यकता है क्योंकि railway लेयर crs मीटर इकाई में है और हम आउटपुट किलो मीटर में चाहते हैं
ok button पर click करें
एडिटिंग को रोकने के लिए toggle editing टूल पर क्लिक करें
stop editing डायलॉग बॉक्स में बदलावों को attribute table में सेव करने के लिए save बटन पर क्लिक करें
attribute table में वापस एक नया कॉलम length_km जोड़ा गया है
अब हमारे पास railway layer में प्रत्येक व्यक्तिगत लाइन की लंबाई है
हम सभी को जोड़ सकते हैं और कुल लंबाई ज्ञात कर सकते हैं
attribute table बंद करें
मैन्यू बार में vector मैन्यू पर क्लिक करें analysis tools ऑप्शन चुनें
सबमैन्यू से basic statistics for numeric tools पर क्लिक करें
एक dialog box खुलता है
input vector layer में railway चुनें
field to calculate statistics on में length_km चुनें
डायलॉग बॉक्स में निचले दाएं कोने में run बटन पर क्लिक करें
results विंडो खुलता है
यहां हम विभिन्न सांख्यिकी परिणाम देखेंगे
यहां प्रदर्शित sum value रेलमार्गों की कुल लंबाई है
ध्यान दें उत्तर थोड़ा अलग हो सकता है यदि भिन्न projection चुना गया है
व्यवहारतः सड़कों और अन्य रैखिक फीचर्स के लिए लाइन की लंबाई को जमीन पर मापा जाता है
ये मान dataset में attributes के रूप में प्रदान किए जाते हैं
इस तरह के attribute की अनुपस्थिति में और वास्तविक लाइन की लंबाई के सन्निकटन के रूप में ऊपर प्रदर्शित विधि कार्य करती है
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा
मानचित्र पर attribute table से चयनित फीचर्स दिखाना attribute table में कॉलम जोड़ना और attributes के लिए सांख्यिकी गणना करना
नियतकार्य के रूप में code files लिंक से डाउनलोड़ की गई कोड फाइल world_1shp का उपयोग करें
भिन्न देशों का क्षेत्रफल स्क्वेरकिलोमीटर में ज्ञात करें
आपका पूर्ण नियतकार्य यहां दिखाए गए अनुसार दिखना चाहिए
निम्न लिंक पर मौजूद विडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं आयोजित करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र भी देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपनी समयबद्ध क्वेरी इस फोरम पर पोस्ट करें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है इस मिशन से संबंधित अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद